फोटो में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है और नीचे बहोत सारे टेबल लगे हैं।

जो कि सफेद रंग के हैं और नीचे से भूरा है वो टेबल ।

और वो मैट है के पीछे कई सारे कुर्सियां हैं सामने कुर्सी है एक जो की खाली है और उसका रंग काला है।

सामने बहोत सारे डंबल रखे हुए हैं और बहोत सारे वर्कआउट के समान है।

और इसमें ट्यूबलाइट लगे हैं कई सारे और लाइटें भी है।

और गुलाबी नीले रंग के भी है और ऊपर बहुत सारे नकली फूल है जो कि लाल और पीले रंग है और लाल और सफेद रंग के भी है।

इस फोटो में एक दुकान है और उसमें एक स्ट्रेचर है सामने एक चेयर है।

जो कि सफेद है और ऊपर डिब्बे में रखा सामान जिस के डब्बे का रंग लाल और सफेद है और ऊपर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

बीच में कुर्सी भी है जो पीले रंग का है नीचे जमीन पर पूरा टाइल्स लगा हुआ हैं।

दो ऐ_सी लगे हैं जो कि सफेद हैं और एक रैक है जिसपे बहुत सारा सामान रखा है और एक वॉल फैन लगा है।

और बगल में एक ट्रे है जिसमें बहुत सारा अलग अलग तरह का समान है और कुछ सैनिटाइजर और कुछ सीजर वगैरा है और पीछे एक वाश बेसिन है जोकि सफेद रंग का है।

इस फोटो में एक बड़ा सा फैक्ट्री जैसा बना है जो की करकट से है।

बाहर से भी दुकान सफेद रंग का है बाहर से भी दो लाइटें जल रही है और दो बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं।

नीचे कई सारे पेट्रोल भरने की मशीन है सामने एक लंबा सा रोड है जोकि काले रंग का है और उसके किनारे साइड में सफेद रंग का बड़ा सा धारी है।

टेबल के ऊपर बहोत सारे ट्रॉफी रखे हुए हैं जो की गोल्डन कलर के चमक रहे हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा रूम है जिसमें बहुत सारे बोरे में समान भर भर के रखा है और सामने एक आदमी है जो कि बोरे को सिर पर लेकर जा रहा है।

और सामने तीन आदमी है तीनों ने मास्क पहना और पीछे का आदमी उसने भी मास्क पहना है।

पीछे बहोत सारे रेलवे ट्रैक है और अगल बगल प्लेटफार्म है सामने एक बड़ा सा ओवर ब्रिज बना है।

ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी है जो की सफेद रंग की है और बाहर से कुछ कपड़ों से सजाया गया और बहुत सारे नकली फूल है।

और एक छज्जा है उसके बॉर्डर का रंग हरा है बाहर से रोशनी आ रही है।

इस फोटो में कई सारे बिल्डिंग है जो कि काफी बड़े बड़े हैं और आगे से बहुत सारे डिजाइन बने हुए हैं।

सामने बहुत सारे नेनुआ है और बगल में कंदा है और खीरा और बगल में एक रूम जैसा बना है जिस पे चबूतरा बड़ा सा और उसमें एक बूढ़े आदमी बैठे हुए हैं।

उसके हाथ में पाइप है और वह गाड़ी को धो रहा है और इसमें बहुत सारी खिड़कियां--

ये ट्रक में एक बीच में लोगो है जो कि नीले रंग का है और उसके ऊपर से हल्का लोहा जोड़ा हुआ है जो कि ग्रे कलर का है सामने दो आदमी लोग बैठे हैं।

और एक के ऊपर छत जैसा बना है एक पे नहीं है और दोनों में ट्राली है ट्राली का रंग भूरा है।

रैक पर बहुत सारे किताबें रखे हैं जोकि अलग अलग रंगों के हैं सामने एक रैक पर कॉपी है जोकि पूरा सफेद है।